यह एक चर्च की पीक है जिसमें उनके ईस्ट लॉर्ड फादर भी लटके हुए है।

पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं बिजली के तार नज़र आ रहे हैं खम्भा नज़र आ रहा है बिल्डिंग नज़र आ रही हैं खुला आसमान दिखाई दे रहा है एक मैदान भी नज़र आ रहा है तथा--

बहुत से रस्ते भी दिखाई दे रहे हैं कुछ मोटरसाइकिल है जो खड़ी है साइकिल भी दिखाई दे रही है और कुछ--